जिसके आगे एक आदमी खड़ा हैं।

यहां पर बहुत सारे ऑटो रिक्शा लगे हुए हैं।

इसके पीछे एक लाल रंग का डब्बे के जैसे कुछ रखा है।

और एक आदमी भी खड़ा है।

यह झूला बहोत् ही बड़ा है।

झूले के आगे छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस दृश्य में हमें एक दुकान दिखाई गई है।

इस दृश्य में हमें एक खेत दिखाया गया है।

जहां बहुत सारे कपड़े लटके हैं।

गाय के पीछे एक आदमी और एक औरत भी खड़े हैं।

इस दृश्य में हमें एक गाड़ी दिख रही है।

आगे देखने पर हमें एक रास्ते जैसा बना कुछ दिख रहा है।